यहाँ एक आदमी खड़ा है ।

एवं घना है यहाँ बड़े एवं छोटे --

कवड्डी खेल रहे हैं यह मैदान --

एक मंदिर जैसा आकार का गोल घर है।

इस मैदान में ग्राउंड भी है।

ग्राउंड के बगल में बड़े-बड़े पेड़ हैं।

लोहे की बनी है इस गेट पर --

इस मैदान में लाइट की भी व्यवस्था है।

इस सैलून में बाल-दाढ़ी कटाए जाते हैं।